बाइक दिखाई दे रहे हैं बोहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं नीले आसमान दिखाई दे रहा हैं टावर दिखाई दे रहा --

इमेज में एक बोहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। सीढ़ीयाँ दिखाई दे रही है। छोटे छोटे गमलो में दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में बहोत ही सुंदर डेकरेशन किया हुआ दीवार दिखाई दे रही है जोकि लिली पिंक कलर की है। पिंक कलर के खंबे दिखाई दे रही हैं।